पर्दा भी दिख रहा है और हेलमेट भी है।

और यहां पे सब ने कैप लगा रखा है येलो कलर का और उनके एक सीनियर सब खड़े हुए है जो ब्लू जैकेट और--

और ये सब लोग उनको लेके जाते हुए घर में से--

और व्हाइट कलर की एक रेड कलर का वाली पट्टी में है और एक कार भी खड़ा हुआ है।

वो हैडफोन रखे हुआ हैं और ब्लूटूथ रखे हुए हैं।